और यहाँ कुछ ग्राउंड्स भी है और इस ग्राउंड्स में छोटे-छोटे घास और इधर पेड़-पौधे भी है।

और इस पार्क के बाहर घर भी है बिल्डिंग्स है बहुत बड़ा-बड़ा है और इस पार्क में बैठने के लिए--

और पिंक है और एक और कपडा है इसमें कुछ छपे मरे हुए है और ये कपड़ा ब्लेजर

झंडा लगा हुआ है और काफी बहुत हरे-भरे पेड़-पेड़ भी--

यहाँ पर एक डैम का निर्माण हो रहा है।

यहाँ पर एक बैंक है और इस बैंक का नाम का एस_बी_आई है जो की भारतीय स्टेट बैंक है और इस बैंक के ऊपर एक वे--